इसमें लाइटें जल रहे हैं।

चारों तरफ छोटे छोटे पौधे हैं।

घर है क्रीम कलर का।

ये एक योगा किलास है।

मेज है मेज पे एक बॉटल रखी हुई है पानी की।

मॉल में कांच का दरवाजा है।

इसमें वाइट कलर का पेंट हुआ है।

ये बड़ा सा मैदान है।

छोटे छोटे पौधे हैं। इसमें पीले पीले फूल निकले हैं।

खंभे लगे हुए हैं लोहे के।

एक बड़ा सा मैदान है।

एक बोर्ड और लगा हुआ है रेड कलर का।

और ब्राउन कलर के सोफे रखे हैं।

एक आदमी खड़ा है मेहरून कलर के टी शर्ट पहने--

इसमें हरे हरे घास निकली हुई है।

लोहे की रेलिंग है और पेंट हुआ है ग्रीन कलर का रेलिंग में।

पीछे ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

एक सेरमी पुल है जिसमें बहोत सारे लोग नहा रहे हैं।

एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है शर्मी पूल के बाहर।

छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

यह एक फिरोजी कलर का पर्दा है।

छोटे छोटे पौधे लगे हैं उसमें ग्रीन कलर के।

एक ए_सी दिखाई दे रही इसमें।